बल्ब जलता हुआ दिख रहा है। एक लड़का भी दिख रहा है। फुग्गो से डेकोरेट कर रखा है।

ये एक गार्डन दिख रहा है यहाँ पे दो तीन झूले दिख रहे हैं।

बहुत सारे फूगे दिख रहे हैं जोकि रेड और येलो कलर के हैं। बहुत सारी लाइट जलती हुई दिख रही है।

ये एक बुक शॉप देख रही है। यहाँ पे बहोत सारी लकड़ी की अलमारी रखी हुई हैं। उसमें --

कलरफुल बुक रखी हुई है। लाइट जलती हुई दिख रही है। एक पंखा दिखा रहा है। एक लड़का खड़ा हुआ है।

उ भी दिख रही है। बहोत (बहुत) सारे पेड़ दिख रहे है। बिल्डिंगे दिख रही है।

ये एक बिल्डिंग दिख रही है जो कि पूरी येलो कलर की पुती हुई है। चार पांच से सिमिट के खंबे दिख रहे हैं।

कांच लगे हुए दिख रहे हैं। सीढियाँ दिख रही हैं। एक बाइक भी दिख रही है।

ये एक हाल दिख रहा है। इसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। कुछ सूट रखे हुए दिख रहे हैं।

एक कुर्सी बनी हुई दिख रही है। नीचे कारपेट बिछा है ग्रे कलर का।

एक एक्टिवा भी दिख रही है। दो --

दिख रहा है वह कांच का है। नीचे छोटे-छोटे से गामले लगे हुए हैं। सीढ़ी दिख रही है एक लोहे का खम्बा दिख रहा है।

राइट में भी एक दुकान दिख रही है। एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है। ऊपर कांच लगे हुए दिख रहे हैं।

यह एक जिम देख रही है। यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं एक्सरसाइज करने की मशीने भी हैं।

यहाँ बहोत सारी दुकानें दिख रही हैं। एक चद्दर का टीन शेड बना हुआ दिख रहा है।

कुछ साइकिल खड़ी हुई दिख रही हैं। एक बाइक खड़ी हुई दिख रही हैं। बोहोत सारे लोग भी दिख रहे हैं। बिल्डिंगे

बहुत सारे बच्चे भी दिख रहे हैं। एक मैडम दिख रही हैं।

ये एक बस स्टेशन दिख रहा है। जहाँ पर दो बस खड़ी हुई दिख रही है।

लकड़ी के कबोर्ड बने हुए दिख रहे हैं। उसमें कुछ कपड़े रखे हुए दिख रहे हैं। साइड में कुछ --

एक लकड़ी की बल्ली लगी हुई है। बोहोत सारे लोग दिख रहे हैं। दुकाने दिख रही है।

यहाँ पर बहोत (बहुत) सारे कुरकुरे टंगे हुए दिख रहे हैं। दो लड़के खड़े हुए हैं साइड में एक चैनल गेट दिख रहा है जो कि वाइट कलर का है।

ऊपर से रेड कलर का पुता हुआ है। साइड में एक रे --

एक बिल्डिंग भी दिख रही है वाइट कलर की। बादल दिख रहे है वाइट और ब्लू कलर के।